परखंड है जिसे हम लोग इंग्लिश से ब्लॉक कहते है । यह कार्यालय में यह जुमोई में उपस्थित है । यह यहाँ बी डी ओ सी. ओ. जैसे आदमी से काम रहता है । अगर किसी का कोलोनी -वोलोनी का कुछ समस्या यहाँ फंस के निक --

ये सेब केला संतरा और अनार जैसा फल पाया जाता है यहाँ की फल बहुत ताजा-ताजा फल होते हैं।

कोई बैंक की स्थापना हो रही है और यह बैंक में गुब्बारे-उब्बारे की सजाया गया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा --